इस फोटो में एक साइन बोर्ड पर अंग्रेजी से शांति वैली होमस्टे लिखा है।

इमारत के सामने एक भूरा इलेक्ट्रिक पोल है।

इस फोटो में एक बड़ा सा गमले का फूल है।

भाईयो और एक आदमी भी है जिसने पूरा काला पहना हुआ है।

बादलों से छाया हुआ आसमान भी है।

आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करके है और ऊपर लाइट लाईट बल्ब को लटका के सजाया गया है।

नीले रंग के दीवार में रंग बिरंगे फूल हैं।

नदी के किनारे हरियाली से भरपूर पहाड़ है और ऊपर नीला नीला आसमान भी है।

मैदान के सामने सफेद रंग का एक लंबा सा इमारत है।

टिन बनाया हुआ लंगर है।

इस तस्वीर में एक बड़ी साफ नदी है।

दीवारे भी कांच की है किनारे में तीन गमले का फूल भी है।

बगीचे के बीच एक सड़क का दीपक है।

इस चित्र में तरह तरह के मुद्रित कपड़े हैं जहां बाई तरफ नीला और पीला रंग का है।

इस विशेष तस्वीर में लुंगी पहने आदमी सैक्सोफोन बजा रहे हैं।

इंट से बनी एक छत है यात्रियों के लिए सीटे बनाई गयी है।